--आ दिखाय गया है जहा पर बेठने काफी वयवस्था किया गया है और यहा पर एक लेडी बेठी हुई है जो की कुछ ले ऋ है और यहा पर बाज लगाया गया है। ताकि कोई भी परब हो तो उसमे बाज पजे--

डांस के लिए जो की कत्थक कहे सकते हैं हमलोग कत्थक स्पेसली कत्थक के लिए ये दिखाया --

ये मुजफ्फरपुर का एक श्री कृष्णा महाविद्यालय है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं।

यह एक तरह का प्लांट का प्रोग्राम लगता है या तो प्लांट बेच रहा है।

ये पूल के नीचे का एक रोड को दिखाया गया है जहाँ पर ऑटोज और कुछ व्यक्ति लगे लगे हैं ऑटोज खड़े हैं कुछ सामान वगेरा भी हैं।

और एक व्यक्ति झाड़ू दे रहे हैं जो कि सफाई कर रहे हैं| सफाई कर्मचारी की और से होंगे सफाई करते हुए।

यह एक भवन का फोटो दिखाया गया है जो कि एक भवन है यहां पर पढ़ाई वगेरा होता है स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते है और कोई भी क्लचर प्रोग्राम होता है इस --

भवन में जो कि चन्दन भवन नाम से यह

ये एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है शगुन स्वीट्स एंड केक जहाँ पर एग्ग्लेस केक को आपको बनाया जाता है।

मेला का फोटो दिखाया गया है जो की बेगूसराय में लगा था।